--काच बहोत बड़े बड़े लगे हुए है ये एस_बी_आई का बैंक दिख रहा है कार दिख रही है और लोग दिख रहे है।

मंदिर दिख रहा है छोटा सा भगवान का स्लिप्स लगी हुई है और बहुत सारी चीज़ें दिख रही है।